ऊपर में ए_ सी_ लगाया गया है।

सामने में ब्लैक बोर्ड भी है।

इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड भी लगा हुआ है।

मुझे यहाँ पे इस दुकान के अंदर केवल देखने को मिल रहा है।

लाइट सब भी बहुत सारे लगे हुए हैं।

दुकान के अंदर बहुत सारे--

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

साइड में एक गमला रखा हुआ है ऊपर में --

बहुत पिलर भी है बहुत सारे आदमी भी है।

आदमी देखने को मिल रहा है।

क्रीम कलर का शॉर्ट पहना हुआ है।

बड़ा सा घर देखने को मिल रहा है।

हॉस्पिटल के ऊपर बहुत सारे--

लाइट लगे हुए हैं।

मुझे यहाँ पर लड़का देखने को मिल रहा है।

बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं।

भगवान का मंदिर देखने को मिल रहा है।

बहुत सारे फूल-वोल--

एक सी_सी_टी_वी कैमरा है।

वहाँ पे बहुत सारे--

ये रिसेप्शन का टेबल है जिसके ऊपर--

हेलमटे रखा हुआ है।

बहुत सारे फूल टंगे हुए हैं।

दीवाल को वाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

वेलक्यूब लैपटॉप रखा हुआ है।

ऊपर में लाइट लगा हुआ है बहुत सारा--

पीछे में हमें धर देखने को मिल रहा है।

उसके बगल में हमें यहाँ पर नीम था --

लरता ने वाइट कलर का शॉर्ट पहना हुआ है।

पेट्रोल पम्प है।

पार्क के अंदर एक आदमी देखने को मिल रहा है।

मुझे यहाँ पर एक आदमी है जिसने ब्लू तलर का--

टी-शर्ट पहना हुआ है।

ऊपर ए_सी लगा हुआ है।

बहुत सारे टॉप सब टना हुआ है।

मुझे यहाँ मुझे यहाँ पर --

बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

ऊपर में लाइट लगा हुआ है।

मुझे यहाँ पर एक लड़का देखनी को मिल रहा है।

मुझे यहाँ पर बहुत सारे--

सामने में मुझे एक मस्जिद देखने को मिल रहा है।

आसपास बहुत सारे पेर पौधे भी हैं।

मुझे यहाँ पर बहुत सारे कुर्सी देखने को मिल रहा है।

पीछे में एक ए_सी लगा हुआ है।

मुझे यहाँ पर बहोत सारे स्कूटी लगा हुआ है स्टूटी ताला तलर का है।

उसके बदल में छिट्टी सब है बहुत सारा--

उसके बदल में मुझे यहाँ पर--

उसने बीच में मुझे यहाँ पर--

अंधेरा है ऊपर में एल्वेस्टर लगा है।

जारी बहुत सारी है साइड में एयर प्रेशर चेक करने वाला मशीन है।

मैट बिछे हुए है।

बच्चे सब बैठे हुए हैं।

पानी वाला टंकी रखा हुआ है।